इस दूकान में एक ब्लैक कलर का रैक रखा हुआ है।

एक पेट्रोल पंप जिसके ऊपर--

दो टेबल बेड डले हुए हैं एक यहां ग्लूकोज टांगने--

वहां पर एक स्टेज का प्रोग्राम है।

दिल से यहां बहोत अच्छे तरीके से फूलों से सजाया गया है।

इस फोटो में एक दिखा है --

यहां बाहर बहुत सारे बाईकें के खड़ी है।

जिम पर लटक कर ये अपनी शरीर को दिखा रहा है इसने यहां व्हाइट कलर की बनियान पहनी हुई है।

लीची रखी हुई है बहुत बड़ी ताजा ताजा यहां पत्ते भी दिखाई--

और तो पीछे बड़ा सा पहाड़ है दिख--

पर लिखा हुआ है टाटा मोटर से महादेव टाटा --

औरंगाबाद यहां पर लिखा हुआ है महाराष्ट्र प्रयटन राजधानी और--

यहां पर बड़े बड़े बिल्डिंग बनी हुई है।

और यहाँपर दो साइकिलें खड़ी हैं।

यहां पर बहुत ही बड़ा सूरज दिखाई दे--

इस फोटो में दिखाया गया है।

यहां पर खंभों पर कई सा--

यहां पे एक बड़ा सा स्टेज है।